मुझे यहां अपना कलेक्शन दिख--

मुझे यहां कुछ कुर्सी दिख रही हैं।

बड़ी नदी दिख रही है।

मुझे यहां दो लड़के दिख रहे है।